यह मकान कुछ पुराना सी मालूम होती है क्योंकि इसमे जंग लग गया है। इसके आगे में पेड़ पौधे भी लगे हुए है। यहाँ एक मोटरसाइकिल --

यहाँ छोटे-छोटे घास भी घास

यह एक क सरक है सरक के इस पर बहुत से लोग हैं सरक के पास बगल में एक बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानें हैं।